यह एक तलाब जैसा इधर से दिखाई दे रहा है।

यह एक घर जैसा दिखाई दे रहा है।

जिसके ऊपर श्री बिश्नोई धर्मशाला लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

जिसमें कुछ व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दे रहे है।

लाइटें जलती हुई दिखाई दे रही है।

और एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दे रहा है।

यह एक स्टेशन जैसा दर से दिखाई दे रहा है।